ये एक जिम है यहाँ पे सब लोग जिम बॉडी बनाने के लिए आते हैं यहाँ पे एक दो बोतल भी रखी हुई दिखाई पड़ रही हैं कुछ टायर वगैरा भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है।

बोहोत ज्यादा मशीन वगैरह भी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर चेयर वगैरह भी रखी हुई दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे पंखे वगैरह भी लगे लाइट वगैरह भी लगी हुई हैं।